मुझे एक चित्र दिख रहा है चित्र में मुझे बिल्डिंग दिख रही है।

मशीन रखी हुई दिखाई दे रही है। चित्र में मुझे--

चित्र में मुझे कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में मुझे कई सारे फैन लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में मुझे कई सारे पौधे लगे हुए दिखाई--

चित्र मे मुझे कई सारे छोटे छोटे पौधे लगे हुए दिख रहे है।

चित्र में मुझे फोल्डिंग बेड रखा हुआ दिख रहा है।

चित्र में मुझे पार्क पे लगे हुए कई सारे एक्सरसाइज झूले दीख रहे हैं।

मुझे एक चित्र दिख रहा है चित्र में मुझे एक सॉप दिखाई दे रही है चित्र में मुझे कुर्सी रखी हुई दिख रही है।